यह दृश्य में तीन चार मंजिला एक बिल्डिंग दिख रहा है।

जिसका रंग नीला सफेद और भूरे रंग का है इसमें दो बालकनी नजर आ रही है।

चारों तरफ बड़ी बड़ी और छोटी पेड़ नजर आ--

एक घर नजर आ रहा है जिसका रंग पीला और लाल है।

यह दृश्य एक टायर की दुकान का है।

इसपे एक लड़का मास्क पहने जा रहा है।

यह दृश्य एक घड़ी वाले दुकान की है।

इसमें एक शीशे की अलमारी में ढेर सारी तरह तरह की मेहंगी और रंग बिरंगी घड़ियां रखी हुई हैं।

इसमें रंग बिरंगे तरह तरह के टाइल्स वाले कालीन रखे हुए हैं।

उसके बाहर एक डी_जे रखा हुआ है और बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

इस दृश्य में हमें एक गार्डेन नजर आ रहा--

बाई तरफ की दीवाल शीशे की है।